साइड के किनारे पर दो लाइटें लगी हुई है और ऊपर भी लाइटें लगी हुई है।

यहां पर गमले और कप और मटका क मटका कप भी रखे हुए हैं।

का कलर येलो व्हाइट और गोल्डन है यहां पर बैलून के स्टार भी लगी हुई है।

यहां पर एक जिम दिखाई दे रही है।

और सूरज भी दिखाई दे रहा है।

सामने एक बहुत बड़ी झील दिखाई दे रही है।

नाव में कितनीयां लकड़ियां रखी हुई है।

जिसके ऊपर शाकुम्भरी नेत्र चिकित्सालय लिखा हुआ है।

जिनका कलर ब्लू रेड ग्रीन येलो व्हाइट ब्लैक है।

और यहां पर बाहर पोस्टर भी लगा हुआ है और यहां पर हॉस्पिटल भी लिखा हुआ है।

यहां पर एक छतरी भी लगी हुई है और पीछे एक मीटर भी लगा हुआ है।

एक जेन्स दिखाई दे रहा है ऊपर कितने सारे पंखे लगे हुए हैं।

यहां पर एक लेडिस और एक बच्चा दिखाई दे रहा है।

पोस्टर भी लगा हुआ है और पोस्टर पर दी स्मार्ट डिफेंसिंग सॉल्यूशन लिखा हुआ--

साइड में भी एक पंखा दिखाई दे रहा है ऊपर व्हाइट लाइट बल रही है।

काले अक्षरों में एस एच_ई लिखा हुआ है।

बाहर कितने सारे जेंट्स दिखाई दे रही है और बाहर कितने सारे गमले रखे हुए है और यहां पर कितने सारे मकान भी दिखाई दे रहे है।

यहां पर एक सीसे वाला गेट भी दिखाई दे रहा है और यहां पर कितने सारे पोस्टर भी लगी हुई है जिस--

कितने जेंट्स दिखाई दे रहे है और।

गाड़ियां भी दिखाई दे रही है और साइड में कितनी सारी बाइक पार्किंग की गई है और यहां पर पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

सामने एक रोड दिखाई दे रहा है।

यहां पर घासे हो रही है जिसपर जेंट्स बैठे हुए हैं।

पोस्टर भी छपा हुआ है जिस पर ए_एन_यू बी डबल ओ के_एस बुक्स लिखा हुआ है।